कुछ बर्तन भी है।

उस बिल्डिंग के सामने बोहुत बड़े-बड़े पोस्टर लगा हुआ है उसके बगल में भी एक पोस्टर उसके सा नीचे.--

यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। घर के पीछे एक --.